जिसमें सुर्ख रंग की सफेद रंग की काले रंग की और एक और सफेद रंग की गाड़ियां खड़ी हुई है जिसके पीछे--

चप्पल पहनी हुई है साथ एक खुला हुआ मोटरसाइकिल है जिसकी वो मुरम्मत कर रहा है और उसके नीचे उसका सामान पाने वगैरह पड़े हुए हैं।

लुंगरी पहनी हुई है कुछ के सर पे दुपट्टा है कुछ बांधे हुए हैं ये यहां पे लोहे की सलाखें लगाने के बाद अब इसमे सिमेट भरेंगे --